दोनों आदमी ने शर्ट पेंट पहन रखा है टोपी भी लगा रखी है ।

एक आदमी बाइक पर बैठे हुए एक बच्चे को बैठाये हुए आ रहा है ।

पोस्टर भी ईसामसीह का लगा हुआ है।

इस उम घर का गेट उम भूरे रंग से रंगा गया है।

इसके बगल में कुछ और भी घर नज़र आ रहे है जो सफेद रंग के है ।

यहाँ पर एक बिल्डिंग बना हुआ है जो ब्लू रंग का है यहाँ पे कुछ सफेद रंग का पट्टी लगा हुआ है जिसमे लाइटे लगी हुई है ।

नीला कलर का शर्ट और नीला कलर का पैंट पहन रखा है।

सामने मे दो बिल्डिंग नज़र आ रहा है ।

टूनिंग बल्ब भी लगा हुआ है। ऊपर मे झंडा नज़र आ रहा है। यह चार मंज़िला बिल्डिंग है।

पेंट किया गया है ।

एक गैलरी है बहुत लम्बा है ।

साइड में फूल भी लगे हुए हैं। काफी हरे-भरे पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पर बाउंड्री भी दिया गया --

दो गाड़िया भी नज़र आ रही है। एक सफेद रंग की है एक काला कलर की है।

जस्ट टैक्स फाइनेंस अकाउंट लिखा हुआ है।

नीचे में दो नाव भी नज़र आ रहे हैं जो काले कलर के हैं।

सामने मे एक घर नज़र आ रहा है ।

सामने मे एक विद्यालय का गेट है ।

ऊपर जाने के बाद ही कोई घंडा छू पाएगा।